बहोत बड़ा हॉली हॉल नजर आ--

एक भैया और टेबल दिख रही है।

जिसमें बहुत सुंदर जगह दिख रही है।

इसमें प्रिंट हाउस की मशीन भी--

टंगे हुए हैं बहुत लाल पीले ग्रीन --

जा ति लिखा हुआ है।

है यहां कुछ लोग व्हाइट कपड़ों में हैं।